काफी सुंदर बड़ी इमारत लम्बी चौड़ी दिख रही है ऊपर काफी सुंदर आसमान दिख रहा है।

पूरी ईमारत सजी हुई है जैसे की बारात का इंतज़ार कर रहे हो लोग| ऐसे खड़े हुए है।

यह एक आइसक्रीम केक की दुकान दिख रही है। इसका नाम श्री राम पी डी आइसक्रीम एंड केक सेंटर है ।

ट्रेन की पटरी दिख रही है लेकिन ट्रेन नहीं दिखे रही है ना ही कोई लोग दिखे रहे हैं। काफी खाली खाली रेलवे स्टेशन दिख रहा --

तो ऊपर यहाँ पे फूल लगे हुए हैं तो इसलिए अन्दर लोग दिख नही रहे हैं।

इसमें खूब सारे बादल हैं। नीचे घांस का मैदान दिख रहा है।